जिसमें तरह तरह के कपड़े हैं।

और इसके साथ-साथ एक जंगल भी है और इसके साथ नीचे को गांव भी दिखाई दे रहा है जो घनई जंगलों के बीच घिरा हुआ है और साथ में घट--

दो लोग ने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहनी है एक भाई ने--

शर्ट पहनी हुई है और इस जिम में तरह-तरह की मशीनें --

अ दूल्हा दुल्हन को पहनाई जा रही है जाती है।

जो भी एक्सरसाइज के लिए मशीनरी यूज़ होती है वो सब यहां पर उपलब्ध है सामने एक शीशा दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक भाई दिख रहे हैं वो येलो कलर की शर्ट पहनी हुई।

दिख रहीं है यह बहोत बड़ा--

बिजली की वायर भी दिख रही है इसके आसपास घना जंगल है।

कमरा है जहां पर दरवाजा खुला है इसमें एक महिला--

एक टेबल भी है और रिसेप्शन अ बेंचेज पर जो बैठी महिला है उनका फेस भी नहीं दिखाई दे --

दुकान है इसमें एक भाई बैठे हुए हैं सिर झुकाए हैं।

का समारोह है जहां पर लोग--

गेट पर खड़े है दो लोग।

यह एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

यह तीन बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और चौथा पुलिस स्टेशन है इसके बाहर दो गाड़ियां--

और जो भी छवि इसमें पड़ रही है।

जैसे कि आसमान की छवि इसमें पड़ी है तो ये लग रहा है कि--

यह एक होटल है जो लोटस --

दो लोग स्कूटी पर बैठे हुए हैं दो लोग पैदल जा रहे हैं और इसी गेट के अंदर एक--

टीपर खड़ा है और बाहर साइकल --

यहां एक पार्सल ऑफ़िस है इसके बाहर--

और अन्य प्रकार की चीजें भी उपलब्ध है।

और इसके आसपास बहुत सारे लोग इधर-उधर घूम रहे है।

दिखाई दे रहे हैं आसमान में।

मछलियों का ढेर सारी मछलियां पकड़ रखी है और ये इनको--

वहां पर किराने का सब सामान मौजूद--

स्कूटर पर बैठा हुआ है और इस बैक के शीशे में गाड़ियां भी दिखाई दे रही है इस आदमी ने--

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी डेकोरेशन बहोत ही सुंदर तरीके से की गई है।

बाइक्स खड़े हैं और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें येलो कलर के --

और इससे जो गाड़ी के टायर है वो भी इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं।

भी है और यहां पर तीन लोग खड़े हैं और उनके साथ एक बच्चा भी है।